और अंदर में कुछ लाइट दिखाई दे रहे हैं और उसके बैनर पे भी लाइट दिखाई दे रहे हैं।

रोड पे ढेर सारे लोग पैदल चल रहे हैं रोड पे कुछ ऑटो खड़े हुए हैं एक लड़का रोड पे गाड़ी चला रहा है।

ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है और इस पे एयरटेल लिखा हुआ है एयरटेल रेड इसमें लिखा हुआ --

ये इमेज में एक एच.एस. मॉल दिखाई दे रहा है जो पूरी तरीके से कांच के बिल्डिंग का दिखाई दे रहा है।

सामने उसके बोर्ड भी लगा है मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल ऊपर आसमान भी दिखाई दे रहा है और इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स भी दिखाई दे रहे है।